बहोत बड़ा बैनर लगा हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ कुछ पेड़ भी है।

और धुप का उजाला आ रहा है और --

यहाँ पर ये गैलरी निकली हुई है और आमने-सामने एक सामान रखा हुआ है एक यहाँ पर--

और यहाँ पे एक ब्रिज दिखाई दे रहा है है जो यहाँ से दूर--

यहाँ पर एक स्टेज बना हुआ है जिसको सफ़ेद कलर के फूलो--

में रखी हुई दिखाई दे रही है बिल्डिंग के ऊपर भारतीय स्टेट बैंक का--

ऊपर कुछ पेड़ की बॉले लगी हुई है और नीचे --

और यहाँ पे कुछ पेड़ लगे हुए भी बड़े-बड़े दिखाई दे रहे है।

यहाँ पर बहुत से पेड़-पौधे दिखाई दे रहे है और--

ए जो टंगे है वह छोटी चट्टान में फंसे हुई है बड़ी चट्टानों के बीच में --